सामने माकन बना हुआ है कोई बिल्डिंग टाइप की बड़े झाड़ भी लगे हुए है।

इधर मेरे को बहुत सारे पत्थर दिख रहे है पानी बेहता हुआ दिख रहा है।

उधर मुझे एक खम्बा सा भी दिख रहा है।

इधर मुझे कुछ मकान सा दिख रहा है इसमें कुछ सजा हुआ है लाल से कलर की कुछ लाइट सी लगी है ओ--

घास दिख रही है इधर मुझे झाड़ से भी दिख रहे है।

इधर मेरे को रोड दिख रही है इधर मुझे घास सी भी दिख रही है ऊपर पहाड़ भी दिख रहा है उसमे हरी-हरी घास का झाड़ लगे है साइड मे नदी है।

इधर मुझे मंदिर दिख रहा है उपर चुंगा लगा हुआ है मंदिर के सफ़ेद सा कलर पोता हुआ है उसमे हरा कलर पोता हुआ है साम-नीचे लाल सा कलर पोता हुआ है ऊपर आसमान दिख रहे है साइड मे झाड़ लगे हुए है।

मुझे सामने एक जली दिख रही है हरे कलर की उसके सामने कोई जानवर खड़ा है उसके सामने ज वो लगे है झाड़ पेड़ लगे है और धुप सी दिख रही है हल्की-हल्की ।

झाड़ दिख रहा है बहुत सारे इधर नीचे जमीन मे घास-सी दिख रही है कोई इंसान बैठे हुए से है।

और ये हरा कलर है उसके सामने कोई ठेला वाले ने कुुुछ लगाया हुआ है दुकान टाइप की ठेला सा लग रहा है। आदमी खड़ा है पिली सी कलर की शर्ट पहना है। दो बलब जल रहा है उसके सामने और --